पहने हुए है। एक हात बाल मे लगाए है। तो एक हात सामने रखे हुए है। नीचे लाल कलर की मैट बिच्छी हुई और पिच्छे सफ़ेद कलर की खुर्चिया भी ढली हुई--